और उसके नीचे अं रोड पे बहोत गिट्टी बिछाया हुआ है पलस्तर किया हुआ है।

और दुकान के ऊपर ढेर सारा लाइट भी है और दुकान में बॉल सब भी है बहोत सारा।

और बाहर में एक आदमी सामान ले रहा है एक आदमी--

नीचे पानी हैं बगल में के कुआ हैं।

व्हाइट कलर का घर है एक छज्जी का घर है उसके बगल में तुलसी गांछ है।

और सब चीज ठीक ठाक करता है।

और नीचे पीछे में डालने वाला तेल रखा हुआ है।

और बगल में कुछ मिट्टी में फूल वगैरह हैं।

ये कहां बुलेट का शोरूम है।

और नीचे मिट्टी है बाहर में बहोत सारा साइकिल खड़ा है बच्चे का छोटे बच्चे का बड़े का।